दूसरे अंकल भी दिखाई दे रहे हैं और जो गोनी है व्हाइट कलर का है येलो कलर का है।

कहन करके कुछ लिखा हुआ है पेट्रोल कर के।

एक बोर्ड पे साइड में और साइड में एक पाइप पड़ा हुआ --

और अ बहोत सारे पोते भरे हुआ है किचड से बहोत हर तरफ मट्टी दिखाई दे रही है।

राजमा डाल के यूज़ करके कुछ पेंटिंग बनाया है।

और पेंटिंग के अंदर चार अ माउंटेन दिखाई दे रहे हैं और चार घर दिखाई दे रहे है।

और चार पेड़ दिखाई दे रहे है बादल भी बनाया है।

और बैनर के बीच बीच में अ लाइट लगाया है एक।

और नीचे जो है एक दूसरा छोटा सा बैनर है जिसके ऊपर भी जय श्री राम भजिया वाला लिखा हुआ है।

और स्कूटी है बाइक है और कार भी है।

जँहा पे बहोत सारे हार्ट लगाया हुआ है।

और उसके साइड में जो है एक फ्रिज दिख रहा है जहां पे बहोत सारे केक दिखाई दे रहे है।

उनका जो मैट है वो ग्रीन कलर का ऑरेंज है रेड है और पिक है।

और एक ट्राइपॉड दिखाई दे रहा है स्पीकर दिख रहा है।

यहां पे एक ग्रोसरी का स्टोर दिखाई दे रहा है।

मंदिर है और दूसरे तरफ बहोत सारे मकान हैं और नीचे अ स्टोर्स है।

और बहोत सारे लोग इधर उधर जा रहे है साइकिल पे ऑटो पे टेम्पो दिख रहा है।

और एक अंकल देख रहे हैं जिसके ऊपर एक साल डाला हुआ है।

ये एक ग्रोसरी का समान का स्टोर दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारे --

रखे हुआ है जिसके पोते भरे हुए है बहुत सारे टाइप के गेहूं है राइस है हल्दी है।

और बहोत सारे सामान रखा हुआ है पैड भी है।

यहां पे एक वीवो शॉप दिखाई दे रहा--

ये एक रिवर में अ दो बोट दिखाई दे रहा हैं।

और जो बोट चलाने वाला नौ नौकार भी दिखाई दे रहा है।

और स्टेयर्स दिखाई दे रहा है आगे और नीचे इनवर्टर ।

एक फैन दिखाई दे रहा है और एक बहार की तरफ बहोत सारा --

और एक माऊटेन दिखाई दे रहा है बोहोत दुर से --